एह स्टेशनरी से बच्चे कॉपी किताब खरीदते हैं। स्टेशनरी बहोत ही जरूरी होता है क्योंकि यहां पे हमें --

और अलग अलग प्रकार कि किताबे --

सड़क पे हमे कूड़े-कचरे नहीं फेकने चाहिए। सड़क पे हम को साफ़ साफ़-सुथरा रखना चाहिए। ये हमारे --

कूड़ा कचरा हमारे प्रयावर्ण के लिए बोहोत हानीकारक होते हैं।

ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही --

पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते हैं और यहाँ पे (पर) --

पवित्र स्थल माना गया है। यहाँ पे हर प्रकार के कार्यक्रम भी कर सकते हैं।

ये इस गा ये एक ट्रैवलर है ट्रैवलर में हम --

यहां पे हम आराम से जाकर साफ-सुथरी जगह पे बैठ के खाना खा सकते हैं।

कुछ चीजों को बनाने का क्राफ्टिंग में हम पेपर से कुछ भी बना सकते हैं क्राफ्टिंग में हम --

वेस्ट मटेरियल जैसे हमारे कागज हो गए।

होता है। ये क्रिस्चियनो का होली स पे ए --

बच्चे पढने जाते हैं। यहाँ पे हमे शांति का माहौल मिलता है। यहाँ पे हमे अलग-अलग टाइप --

के हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग --

बस में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके साथ हम कहीं पर भी सफर कर --

कही कम दूरी के सफर के लिए बस एक बहोत (बहुत) ही अच्छा साधन है।

ये बैंक ऑफ़ इंडिया गवर्नमेंट की बैंक है जोकि बहोत --

पैसे को बचा कर और वहाँ पे उसको फिक्स करते है जिससे कि --

अम् को हम बहोत ही जल्दी जैसे कर सकते हैं। अगर हमको चौबीस घंटे में कहीं जाना है तो वो हम एरोप्लेन --

एरोप्लेन से हम कई की दुरी को बहुत ही कम दिनों में --

इंटरकोलेज में हमे हं इंटर तक की पढ़ाई होती है और इंटरकोलेज में --

हमें केमिस्ट की दुकान पे सभी प्रकार की दवाएं मिल जाती हैं जी-अ-जिनकी हमको आवश्कता रहती है। म्-ह-अगर हम अ डॉक्टर --

हमे कोई भी दवा प्रेस्क्राइब किए रहते तो हमको वे --

ए जहाँ पे डॉक्टर हमे देखते हैं और --

मिलते हैं और बेकरी शोप में हम के केक वगे अ --